यह बहुत बड़ी नदी है जो व्यक्ति नह नदी में खड़ा हुआ है जो पूजा कर रहा है अन्दर अ आगे की ओर बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है जो छोटे दिखाई दे--